यहां एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है और नीचे कहीं-कहीं ग्रीन कलर दिख रहा है तो वह सड़क बनी हुई है और थोड़ा सा --

नहा रहे हैं अंदर पानी में अभी बड़े बड़े कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

बास की टोकनी है और तीन आदमी खड़ी हुए है पीछे ऊपर आसमान--

इसमें कान काली कुर्सी रखी हुईं हैं और एक सफेद और लाल गुब्बारों का गेट बना हुआ है।

यहां एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। जिसके ऊपर काला पोस्टर लगा हुआ है। जिसमें सफेद कलर से--

क्लासिक संस्कारी टीचर इंटर फियरेंस टेस्ट लिखा हुआ है और साइड में एक लड़की और एक लड़का--

सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे गीली मिट्टी दिखाई दे रही है और दो छोटे--

और सामने कुछ गा पेड़े लगे हुए हैं एक खंबा दिख रहा है जिसके ऊपर तार दिखाई दे रही है।

और सामने सड़क है जिसके इस साइड जाली लगी हुई है और उस साइड पीले कलर के खंभे बने हुए हैं बहोत सारे --

और एक नीचे टेबल पर चश्मा और बड़ा सी कैची रखी हुई है और साइड में पावडर और एक बोतल रखी हुई है और कांच की --

ऊपर पथरों पर बैठा हुआ है जो सफेद टी शर्ट काला चड्ढा पहने हुए है और इसके पीछे पत्थर है से--

लेकिन व्हाइट और पीली दिखाई दे रही है। दूर बहोत सारे जोड़ दिखाई दे रहे है जो हरे और--

लेकिन व्हाइट दिख रहे हैं कुछ खम्भे दिख रहे हैं लेकिन वे कुछ काले दिख रही हैं और ऊपर आसमान भी--

आनी हैं जिसके सफेद पडदा लगा हुआ हैं और एक लड़का खड़ा हैं इसके सामने--

यह दुकान दिख रही है जिसमें सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो काले कलर का सेट पहने--

काले कलर की पट्टी बनी हुई है और बीच में खिड़की लगी है ऊपर फैन भी--

लिखा हुआ है और नीचे दो मोटरसायकल दिख रही हैं और ऊपर काला आसमान दिख रहा--

और कहीं रोशनी पड़ रही है तो लाल से सफेद दिख रहा है।

पेड़ों की छांव दिखाई दे रही है और ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।